एक आकृति बनी हुई है ऐसा लगता है जैसे वो किसी पत्थरों पर टिकी हुई हो।

का कोई उत्सव सड़क पर सेलिब्रेट कर रहे हैं।

आदमी के पीछे ये खूब सारा शानदर सा जल है जल में हम एक बोट को भी देख सकते है बोट में ध्यान से देखा जाए तो कुछ लोग भी दिख रहे हैं इस तस्वीर में हम काफी हरियाली भी पीछे देख सकते हैं।

वीणा बजा रही है दूसरी औरत के मुँह के पास माइक रखा है शायद वो कुछ गा रही हैं और आदमी ढोलक बजा रहा है।